यह न्यू जॉइंट के कुछ ग्लब्स वालभ्स स्पिरिट बहुत सारे आइटम यहां पे मिलते हैं यहां पे कंडोम --

इलाज किया जाता है इसमें यहां पे बालों का झड़ना माहवारी ज्यादा आना--